एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे निचे एक शट्टर लगा हुआ है जो की ब्लॅक रंग का है यहाँ पे अंदर साइड एक मशीन दिखाई पड रही है बगल में कांच का दरवाजा लगा हुआ है यहाँ--

भी मशीन लगी हुई है नीचे एक शट्टर दिखाई पड रहा है जो की येल्लो कलर में दिखाई पड रहा है ऊपर कुछ चीजे दिखाई पड रहा है नीचे का दीवार व्हाइट कलर दिखाई पड रहा है यहाँ पे कुछ जीने बने हुए है।

हमे बहुत सारी रेलिंग दिखाई पड रही है जो की ब्लू कलर येल्लो कलर में बना हुआ है या पथरो से पे बना हुआ है इसके सामने साइड बहुत सारे पहाड़ जैसे दिखाई पद रहे है जो की ब्लैक रंग में दिख रहे है निचे बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे है।

नीचे बहुत सारी घाँस भी लगी हुई हैं जो कि ग्रीन रंग मे दिखाई पड रही हैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर की जली भी लगी हुई दिख रही हैं पिछे और भी पेड लगे हुये दिखाई पड़ रहे हैं।

इनमे बहुत सारी खिड़किया भी दिखाई पड रही है खिड़कियों पे कांच लगे हुए दिखाई पड रहे है यहाँ पे साइड में एक बड़ा सा येल्लो कलर का बना हुआ है वहा पे एक बड़ी सी घडी भी दिखाई पड रही है यहाँ पे सामने एक ग्रीन कलर का गेट लगा हुआ है गेट खुला हुआ दिखाई पड रहा है नी--

स्टेडियम दिखाई पड रहा है यहाँ सामने बहुत सारे घाँस लगी हुई है जो कि ग्रीन कलर की दिखाई पड रही है यहाँ बहुत बड़ा बना हुआ है यहाँ पे सामने कुछ लोग बैठे हुये दिखाई पड रहे है कुर्सी पे बैठे सामने एक बैग दिखाई पड रहा यहाँ पे बगल मे एक बोतल भी रखी हुई दिख रही है।

एक बिल्डिंग दिखाई पड रही हैं यह धोख़ान मे बनि हुई हैं ये ग्रीन कलर और नीचे का हिस्सा ग्रे कलर मे दिखाई पड रही हैं यहाँ पे बीच मे खंबा बना हुआ हैं।

साइड मे एक रोड दिखाई पड रही हैं यहाँ पे एक बाईक वाला जाते हुये दिखाई पड रहा हैं सामने स्कूटी वाला दिखाई पड रहा हैं सामने एक बाईक खड़ी हुई दिखाई पड रही हैं पीछे कुछ कार खड़ी हुई दिखाई पड रही हैं जो कि सिल्वर रंग कि --

पीछे बिजली का खंबा दिखाई पड रहा है ऊपर आसमान में बहुत सारे बादल दिख रहे है और ब्लू कलर व्हाइट कलर में दिखाई पड रहे है निचे फुटपाथ ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे साइड में बहुत सारी घास भी लगी हुई दिखाई पड़ रही है यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए है।

एक पुरानी इमारत दिखाई पड रही है यह काफि बडी दिख रही है और यहाँ दो बनि हुई है यहाँ पे दिवार व्हाईट कलर मे दिख रही है।

यहाँ पे बहुत सारे खिड़कियाँ भी दिखाई पड रही है खिड़कीयो पर काई जमी हुई दिख रही है और कुछ खिड़कियों के कांच टूटे हुये दिखाई पड रहे है यहाँ पे सामने एक स्कूटी खडि दिख रही है एक कार जाति हुई दिखाई पड रही है यहाँ पे रोड ग्रे कलर मे दिख रही है।

यहाँ पे ऊपर छत व्हाइट कलर ऑरेंज कलर में दिखाई पड रही हैं और दीवारों पे बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं यहाँ पे पिल्लर दिया हुआ हैं जो की गोल्डन कलर में दिखाई पड रहा हैं और पिल्लर पे कुछ फॅन लगे हुए दिखाई पड रहे हैं सामने एक खिड़की दिखाई पड रही हैं।

पीछे साइड बहुत सारे पेड़ दिख रहे है जो की ग्रीन और ब्लैक रंग में दिखाई पड रहे यहाँ पे साइड के पत्थर अ ग्रे कलर के दिखाई पड रहे है और ब्लैक रंग के दिख रहे है इसपे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई पड रहे है।

पानी दिखाई पड रहा हैं जो कि ग्रीन कलर का दिख रहा हैं सामने बहुत सारी नौ भी खड़ी हुई दिखाई पड रही हैं जो की छोटी हैं और वाईट कलर कि दिखाई पड़ी साईड मे ब्लू रंग कि दिख रही हैं पीछे मकान बना हुआ दिख रहा हैं।

जो कि दो ख़ान का दिखाई पड रहा हैं वहाँ पे कुछ कांच दरवाजे लगे हुये हैं यहाँ पे बहुत सारे पेड भी दिखाई पड रहे हैं पीछे का हिस्सा पूरा ग्रीन दिखाई पड रहा हैं सामने साइड पेड लगे हुये हैं जो कि ग्रीन कलर मे दिख रहे हैं उपर आसमान स्काइ ब्लू रंगा दिख रहा हैं।